ले नज़र आ रही है। बोहोत सारे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। लाइट जल रही है। साईकिल है टू व्हीलर है। व्हाइट कपड़े पेहने हुए --

एक बेकती बैठ के मिट्टी खोद के झाड़ों में भर रा । पोधे लगे हुएं हैं जिसमें काले कलर के। न् कपड़े पेहना हुआ है।

अम्म ज-जालियाँ दिख रही हैं लड़कियाँ दिख रहीं हैं और यहाँ एक व्यक्ति दिखा रहा है और लेडिज दिख रही हैं और बहोत सारी मोटरसाइकिल दिख रही हैं।

जिसमे कत्थई कलर का बैग है। रेड कलर का नीले कलर का जीन्स पहने हुई है।

गुलाबी कलर है व्हाइट कलर है और गुलाबी हल्का इधर मु -मु -मूर्ति भी दिखाई दे रहा है निचे वह मु- घास दिखाई दे रहा है एक लेडीस चल --

डब्बे रखे हुए हैं। गमला रखा हुआ है। कत्थई वाइड और नीले कलर का पूता हुआ दिखाई दे रहा है। मैडम व्हाइट कलर --

ये एक स्कूल है जिसमे बहोत सारे लोग खड़े हुए हेंगे और लाइन से और निचे जाले दिखाई दे रहै दिखाई दे रहा है निचे --